एक गुफा दिखाई दे रही है ऊपर बहुत बड़े-बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे है जिसका कलर गोल्डन और गुलाबी दिखाई दे रहा है।

वहा एक पंखा दिखाई दे रहा है एक लड़का मशीन में एक्सरसाइज करते दिखाई दे रहा है नीले कलर की मशीन दिखाई दे रही है रात का टाइम दिखाई दे रहा है खिड़कियां दिखाई दे रही खिड़की में पर्दे लगे दिखाई दे रहे हैं।